खड़े हुएं और कुछ बैठे हुएं दिखाई दे रहे हैं।

कुछ कुर्सियां और टेबल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जोकि एक सोसायटी के बाहर बनी हुई नजर आ रही है।

हमें एक पार्क जैसा कुछ दिखाई दे रहा है यहां पर एक आदमी --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

एक एक तरफ ए_सी का पंखा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

खड़ी हुई नजर आ रही हैं और कुछ लोग--

खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

दो पिलो गुलाबी रंग के नजर आ रहे हैं।